तरह - तरह की अनेक प्रकार की मछली रखी हुई है एक लेडिस है औरत और बैठी हुई है वह मछली बेच रही है साड़ी पहनी हुई है।

और साथ ही अन्य सामग्रियां भी है मशीन लगी हुई है टिन का शेड है लाइट जल रही है।

लोग खड़े हैं जिसमें पुरुष हैमहिला है सब अपने-अपने कार्य में व्यस्त है रात्रि का समय है।

और सामने में बैंक का गेट है और ए.टी.एम भी इसमें चार्ज की स्पीड लगी हुई है बैंक जो है।

सारे विद्यार्थी जो है अपने आपने कार्य में व्यस्त अपने-अपने जगह पर बैठे हुए हैं इसमें से एक विद्यार्थी मास्क लगाया हुआ हैं।

यहां एक नदी है जो कि झरने के जैसी प्रतीत हो रही है स्टेप बाय स्टेप है।

यह एक होटल की तस्वीर है जिसका नाम होटल देवश्री।

यह एक मछली विक्रेता है जो की लाल रंग की चटाई पर मछली रखे हुए हैं यहां मछली बेचता--

एक युवक है जो की लाल शर्ट और ब्लू जींस पहना है एक युवक है जो ब्लू शर्ट और ब्लू जींस पहन के अपनी मोबाइल से कुछ तस्वीर ले रहा है।

यहां पर गुफा में एक आदमी घुसने का प्रयास कर रहा है गुफा काफ़ी पुराना है और वह ब्राउन कलर का है।